एक्सरसाइज कर रहा है बॉडी बना रहा है बिल्डर है ये देख सकते है यहाँ उठाया हुआ है कितना मोटा इसका बॉडी है।

ब्लेक ब्लेक कलर का दिखाई दे रहा है। यह मोटा पतला है । देख सकते है इसका नाम तो हम नही जान रहे हैं ये क्या है।